और यहां पर कुछ लोग भी हैं और कुर्सियां भी हैं ।

एक सफेद रंग का पंखा भी लगा हुआ है और लाइट भी जल रहा है ।

यह एक टेबल का चित्र है जिसमें लाल और सफेद रंग का गमछा बिछाया गया है।

यह एक बिल्डिंग का चित्र है बिल्डिंग का रंग पीला और सफेद है।

और ऊपर में रेलिंग भी दिया गया है और खिड़की भी है और सीढ़ी भी है और दरवाजा भी है और गेट भी लगा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे कुर्सियां भी लगे हुए हैं जिसका रंग है ब्लू ।

और ऊपर में बहुत सारा सामान भी टंगा हुआ है।

यह एक रूम का चित्र है रूम का रंग है सफेद और ऊपर में ब्लू भी है।